जैसा कि इस पिक्चर को हम देख रहे हैं ये एक ग्राउंड प्लेग्राउंड है।

जहां पे जहां पे हम दूध दही लस्सी वगैरा--

इसने अपने चेहरे पे फेशियल वगैरह कराते हुए नजर आ रहा है।

बहोत लगाए हुए हैं काफी अच्छे लग रहे हैं रेड और पिंक कलर के सब--

ऐ जैसे कि की ब्रेड वगैरह अ और नेट बटर वगैरह--

जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये इमेज जो है स्कूल की है और स्कूल के बाहर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं।